और यहाँ पास मशीन है लाईट है खम्भा है तार है खिड़की है दरवाजा है और यहाँ पास टाईल्स लगाये है और यहाँ पास कलर का और यहाँ पास और दर्री बिछाये हैं ।

और यहाँ पस टमाटर है नारियल है आलू है।